एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें कुछ घनी घांस है| यह अजीब - गरीब घांस है जो कि कुछ हरे रंग के कुछ पीले रंग के हैं।